पौधा है पूरा एक दम हरिहर-हरिहर पौधा दिख रहा है कितना मस्त लग रहा है देखिएगा भैया।

वाह कितना अच्छा नजारा है यहां पे देखने लायक नजारा है अरे वाह कितना अच्छा अच्छा हरा हरा पेड़ है हरा पौधा है हरा है।

कितना अच्छा बनाया है बनाने वाला के हाथ में जादू है देखिए कितना मस्त लग रहा है बताई कितना सुंदर जादू है इस --

क्या नजारा है क्या देखने को नजारा मिल रहा है वाह इतना सुंदर सुंदर पौधा मिल रहा है देखने के लिए हमको भी।

यह सब है इधर देखिए उधर पौधा भी है इधर भी है और यह देखिए गेट है यहां पे और ये ये देख--

कितना अच्छा काम कर रहे हैं अपने शरीर कितना अच्छा बॉडी वाह क्या बात है बहुत अच्छा बॉडी ।